बादाम हैं साबुन हैं।

गुड़िया गुड्डे --

इनके पीने का कहीं पानी भी रखा जाता है इनकी देखभाल रखी जाती है काफी।

ताकि जिसमें जानवर नहा सकते हैं पानी पी सकते हैं।

दीवार के सहारे एक जो है --

देखो ये जो पोस्टर चमक रिहा है सामने ये जो है --

ये देखो काफी बड़ा म --

चल रही है काफी बड़ा है सरियों के द्वारा ये मकान जो है सरिये --

काफी बढ़िया तरीके से --

मंदिर को सभी हिन्दू भाई पूजते हैं।

ये जो कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी की है।

और भी सारी पत्तियां भी बनी हैं।

सभी पूजा करने के लिए --

बैंक ऑफ़ बड़ो बड़ौदा है।

मंजूरी है जो बैटरी से चलती है।

और काफी बड़ा अस्पताल है ये --

सामान वहाँ रखने के भीं रखी हुई हैं।